और सड़क के आसपास के जो एरिया है छोटे छोटे घासों --

उनके ऊपर भी एक हरी-भारी पत्ते हैं।

यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में एक छोटे-छोटे बच्चे --

एक घरो कि छत की ढलाई हो रही है जिसमें की कुछ मजदूर आप --

बैंक दिखाई दे रहा है। बैंक के पास एक छोटी सी ए.टी.एम है और बैंक का नाम --

आसमानी कलर के शर्ट पहने हुए है और एक सफेद रंग की शर्ट --

ऊपर भूरे रंग की चादर उढ़ाई हुई है और --

लेकिन आस-पास जो एरिया है ब्लू रंग की है और नीचे ब्लू कलर के टाइल्स लगी हुई है।

वेट लिफ्टिंग के करते हुए दिखाई दे रहे --

क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड के बाहर कई सारे होटलें हैं।

यह एक चित्र है और इस चित्र में दर्शाया गया है कि एक --

खड़े हैं और दो लोग एक-दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक पंखा है सफेद रंग का --

लाल और पीला कलर की टाइल्स लगी हुई हैं और जिसमें --

दिखाई दे रहा है कि एक बहोत ही बरी चट पत्थर की --

पानी के डैम्प बना हु --

और ऊपर से नीचे की ओर नदी में --

गिर रही है और यह डैम --